ये काफी सुंदर दिख रहा है।

यहां पर बहोत सारे लोग तालियां भी बजा रहे हैं और काफी लोग बच्चे दौड़ भी रहे हैं।

यह एक जगह है जहां पर खेती-बाड़ी हुई है|

उनके लिए ये जगह बोहोत ही मायने रखती है।

कि समाने रखी हुई है मछलियां पकड़ने के लिए।

ये एक काफी बड़ा फ्लैट है जो काफी सुंदर दिख रहा है। यहां पर एक भी लोग नहीं दिख रहे हैं।

यहां की बहोत मान्यता है। यहां पर लोग अपनी मन्नते पूरे करने के लिए आते हैं।